लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है लोग इससे प्रसन्न होते हैं ये बेच के उनको अच्छा लगता है।

जो कि इनको ज्यादा मेडिसिन वगेेरा लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और भी सारी चीज़ें होती हैं जो गार्डन में आने के बाद ठीक हो जाती हैं |

ये लोग मछली बेचते हैं। ये मछली उत्पादन --

फायदे में भी रहते हैं लोग इससे कर्ज भी ले लेते है अच्छे-अच्छे जो बिजनेस मैन जो उद्योगपति है यहाँ --

ग्राउंड टाइप में रहता है। जहाॅं पे लोग लंच टाइम में या और भी जो उनका पीरीयड खाली होता है यहाॅं पे मस्ती करते ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं।

विष्णु अच्छी कंपनी है कार मनुफैक्चर की दृष्टि से यहां --